मछलियां लाल लाल भी पड़ा हुआ है।

यह एक मेन रोड निकल रहा है।

एक ऐ_सी भी है और लाइट भी लगी हुई है।

इसके सर पे चिमटी भी लगी हुई है।

दीवार पे सरस्वती माता की तस्वीर है।

खूब सारी खिड़कियां भी लगी हुई हैं।

और एक आदमी जा रहा है उसके साथ एक लेडीज भी है।

नीचे सफेद कलर की पट्टी भी है।